आते जाते व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं ठीक ही दिखाई दे रहे हैं ऑटो कार बस वगैरा पूरे साधन दिखाई दे रहे हैं।

इसमें दो तीन बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है तार भी दिखाई दे रहा है सूरज टाइप में एक कुछ वाइट कलर का बना हुआ है कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है बोर्ड्स लग रहा हैं जिसमें हीरो के डाई अम चित्र बने हुए है छोटे-छोटे पेड़ पौधे गमले रखे हुए है।

अ ये एक बस है बस स्टेशन व्हाइट कलर की बस है जिस पे डायमंड लिखा हुआ है है और पास में भी बस ही है जिस पे पोस्टर लिखा हुआ है पीछे कच्ची ईट की दीवाल है।

ये भी कोचिंग सेंटर है जिसके ऊपर हरी कलर की चद्दर से है और एक भी बन रहा है जिसमें विंडोज भी दिखाई दे रही है।